और सामने बहोत बड़ी सड़क भी दिखाई दे रही है और एक साइड में ग्रीन कलर के पेड़-पौधे भी नज़र --

यहां पर हमें अह कुछ लेडिस दिखाई दे रही हैं क्योंकि कोई फंक्शन हो रहा है।

यहां पर हमे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है जहां पर एक--

और वाइट कलर का पेंट किया गया है और एक आदमी बैठा भी दिखाई दे रहा--

और जो जंगल की है जैसे कि आस पास में बहुत ही--

और एक साइड मे हरे कलर के पेड़ पौधे भी बहोत ही--

और बाहर हैंड अह वॉश करने के लिए शॉवर सा भी बना हुआ है और एक सड़क भी है।

और ये बहोत ही बड़ा होटल दिखाई दे रहा--

दिखाई दे रहा है बहोत ही बड़ा है जोकि डेकोरेशन बहोत अच्छी की हुई है।

चार तरह की गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक लेडिस भी--

अ शादी की तैयारी के लिए बहुत सारे डेकोरेशन की गई है और अ पिक्चर भी बाहर अ दो तीन पिक्चर भी लगी हुई है और कई लोग --